पिछाड़ी बिटिन हरी भरी घास फूस छ या फंडे की तरफ छ दिखेण लगीं।

डेफ एंड डेबिटर आता है हौर सारी चीज भी होल दिखेण लगीं इस बिटेन जियो और फोन को बोर्ड भी छे दिख्येण लग्यूं।

अगाड़ बटिन आपथे बहोत ही बढ़िया सुनहेरो लाइट लुइट होल दिख्येण लगीं जख फंडे बटिन आपथे पड़दा-पुडदा भी होला सभेण दिख्येण लग्यां।

जन की फोटो मा च आपथे दिख्येण लग्युं की यख मा जी पाणी को बहोत ही बड़ो समुद्र चा जखमा जे बहोत सारा लोग या बच्चा यखमा छिन नहेणा छन आया एक आदमी जैकी लाल कलर शर्ट --

फोटो मा जी आप ते दिखेण लग्युं की ये फोटो कै बुक सेलर की छ लगण लगीं जख मा जी दुकान कु मालिक बैठ्युं पिछाड़ी बीटिन आप ते किताब अर कॉपी होली दिखेण लगीं।

जनकी फोटो पर आपते दिख्याण लग्युं की यखमा जी एक लड़का च जोकि नाओ का ऐंच खड़ू च हुयुं याका फंडा बिटिन आपते थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पाणी भी होल दिख्याण लग्युं।

फोटो मा जी आप देख सकदे की पिछाड़ी बिटिन एक बहोत ही बड़ी झील छा यख मा जी एक आदमी सदरी पैरिक छ बैठ्यूं यांका नीस बिटिन मोटा मोटा डुंगा अर डाला छन।